और बहार में तीन चेयर्स लगे हुए है और एक पौधा भी दिख रहा है और एक बाइक भी खड़ी है।

यहाँ एक सड़क है सड़क के किनारे दो दुकान है और दुकान में बहुत सारे समान भी रखे हुए है और दो आदमी भी दिखाई दे रहा है।

ये एक बोहत बड़ी-सी नदी है। आ नदी को साइड साइड में सीमेंट का बोरा से इसे घेरा गया है। बाउंड्री के जैसा और यहाँ पे एक लड़का भी खड़ा है फुल्ली ब्लैक पहन के।

ये एक गांव है गांव में बोहत सारे है व-व पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं और एक बड़ा-सा पेड़ है और यहाँ पर दो से बाँस है घर भी बने हुए हैं।

यहाँ पे एक अ ग्राउंड जैसा है और यहाँ पे ऐ बहुत सारी कार भी लगी हुई है और एक कार लगी है उसके पीछे एक पेड़ भी दिख रहा है और बहुत सारी बिल्डिंगस भी दिख रही है।

यहां पर एक ग्राउंड है और ग्राउंड में दो बस खड़ी है और एक घर भी दिख रहा है और एक टावर भी दिख रहा है।